यहां बहोत ज्यादा गोट्स है तथा उनके चरने के लिए--

यहां नीचे भी बहोत ज्यादा सामान तथा नवदुर्गा के रूपों का वर्णन है।

जो पिंक कलर का डेकोरेट किया गया है यहां पर भवन के पास बहोत ज्यादा पेड़ है तथा पास ही में अन्य कई दुकाने भी है जो खुली हुई हैं।

यह फोटो किसी साड़ी शोरूम की फोटो है।

यह फोटो किसी डॉक्टर की फोटो है जो इलाज कर रहे हैं यहां सिविल लगा हुआ है जहां लोग अपना इलाज कर सकते हैं।

था पार्क में एक घास है जो बहोत अच्छी है।

यहां पर तीन लोग हैं जो खड़े हुए हैं।